ये किसी का घर दिख रहा है और--

एक फास्ट फूड का दुकान दिख रहा है अंदर में ब्लू कलर का लाइट जल रहा है।

पूड़ा प्लेट में चाट दिख रहा है साइड में पीयाज कटा हुआ है गुपचुप भी दिख रहा है।

ये कोई बहोत अह बड़ा दुकान दिख रहा है जिसमें अह लेडिज का पूरा सामान भी है।

और नीचे दो बाइक है। एक लड़का भी बैठे हुआ है गेट के सामने एक लड़का भी --

ये कोई तीन भगवान का मूर्ति दिख रहा हैं।

एक बड़ा सा दुकान दिख रहा है इसमें पूरा साल टंगा हुआ है।

और बहुत कपड़े भी है और ठंडे का कुछ समान दिख रहा है इसमें साइड में--

ये एक दिवा घर दिख रहा है जिसमें बहुत अच्छे अ अच्छे से घर को सजाया गया है।

पीला ब्लू हरा लाल बहोत कलर का प्लास्टिक का समान दिख रहा है जो घर में यूज होता है।

स्लाब बना हुआ है किचन का और खीडकी भी है बेसिन दिख रहा है।

दो चार हरीन हैं पेड़ भी हैं पीछे और नीचे जमीन पे पीला पीला फूल गिरा हुआ है।

ये जो कपडे का दूकान दिख है इसमें एक जेंट्स एक लेडिज अ--

पुतला को ऊपर पेंट और टी शर्ट पेहना हुआ हैं साइड में और भी बहोत कपड़ा हो कपड़ा है बहोत सारा।

ये एक प्लेग्राउंड दिख रहा है जिसमें बहोत सारा बच्चे--

एकक रूम दिख रहा है एक बेड है अ सफ़ेद अ कलर का बेडशीट है दो तकिया है।